प्रकृति के गोद में देखिए प्रकृति को अच्छा दिखाने के लिए प्रकृति तो खुद अच्छा है।

जमीन में घास उसके उपर में बड़ा सा घास ।

बहोत बड़े से अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है।

नाम उसका कितना सुंदर है देखिये सोच करके दिया गया है स्कूल हेयर एंड स्पा इसका मतलब स्वर्ग होता है।

मछली खरीदने के लिए आये हैं काफी लोग हैं यहां।

और ये पिछला पोरशन है जिससे पहचान में नहीं आ रहा था लेकिन ये माथा का माथा है जिसमें बाल को ऐसे रखा गया है।

देखिए ये हमारी संस्कृति हमारा विश्वास --

ये काफी पुराना और काफी पुराना है इसमें मरमत की जरूरत है लेकिन जब ये बनी थी ये पुरे शबाब में थी।

ये एक मंदिर है और मंदिर के नीचे जो फर्श होता है वहां पे टाइल्स लगा हुआ है।

ऐचूली अंदर से ब्लू रंग का बल्ब भी जलता होगा इसलिए ब्लू शीशा है इसलिए ब्लू लिखा है।

रंगीन पौधे हरे पौधे गुलाबी पौधे है नारंगी पौधे --

जमीन देख सकती हैं कई-कई घास है हर जगह सारी हरयाली भरी है ।